इस फोटो में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहां मुझे लकड़ी दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे गेट दिखाई दे रहा हैं।

यहां मुझे खिड़की दिखाई दे रही है।

यहाँ मुझे सजावट दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे--

इस फोटो में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे तीन पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ बाइक दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे एक कार दिखाई दे रही है।

यहां मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ मैट्रेस दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा--